एक ढ़ोलक बजा रहा हाय । एक मंजीरा बजा रहा हाय ।

ये किसी पुरानी सी बिल्डिंग की फोटो है। जिसमे ऊपर कि तरफ पिंक कलर की दीवाले हैं जो कि पिंक आधा-आधा दिख रहा है।

पे डिज़ाइन बनी है। इसका कलर चॉकलेटी और पीला कलर का है।

जिसमे बहोत बड़ी-बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही है। पीछे तराजू दिख रहा है जिस पे खून भी लगा हुआ है।